आपका फिर से स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम dowhile लूपloop के बारे में जानेंगे
इसको dowhile स्टेटमेंटstatement भी कहा जाता है आप चाहें तो इसे लूपloop या स्टेटमेंटstatement बोल सकते हैं
इसका आधार while लूपloop के समान है हालाँकि कंडीशन लूपloop के अंत में जाँची जाती है न कि प्रारंभ में
हमारे पास do है हमारा ब्लाक कर्ली curly कोष्ठकों में है और अंत में while है फिर कंडीशन यहाँ पर है अतः यह कन्डिशनconditionशर्तहै
अब मैं एक छोटा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि हर बार संख्याओं की वृद्धि करूँ और प्रत्येक लाइन पर एकोecho हो जैसा कि मैंने मेरे while loopलूपमें किया
अब कंडीशन है जब संख्या 10 पहुँचती है मैं चाहता हूँ कि नेम name नामक एक वेरिएबल दूसरे नाम में बदल जाए जहाँ पर लूप loop समाप्त हो जाएगा
मैं शुरू करने के लिए num = 1 टाइप करता हूँ
फिर मैं my name is alex टाइप करूंगा
लूपloop की कंडीशन जो मैं चाहता हूँ है while the name = alex
जब तक नेम name = एलेक्सelex है यह लूपloop करेगा अतः किसी स्थान पर हमें एक विशिष्ट कंडीशन कहनी पड़ेगी नेमname को billy में बदल दीजिये और फिर लूपloop आगे नहीं बढेगा क्योंकि नेमname अब एलेक्सalex के बराबर नहीं है
अब हम do लूपloop के भीतर एक if स्टेटमेंटstatement सम्मिलित करेंगे याद रहे आप रख सकते हैं
अब जो हम टाइप कर रहे हैं do है
सबसे पहले नंबरnumber का मान एकोecho out करें
आप लाइन को ब्रेक करने के लिए इसे एक छोटे से html कोड के साथ जोड़ सकते हैं
यहाँ पर मैं num++ टाइप करूँगी जोकि num +1 के समान है
फिर मेरा if स्टेटमेंटstatement if num is greater than or equal to 10 then no echo यदि num 10 से बड़ा या बराबर है तब echo न करें
मैं नामname बदल कर billy करना चाहता हूँ
चलिए मैं संक्षेप में फिर से दोहराता हूँ याद रखिये मैं यहाँ पर कर्लीcurly कोष्ठकों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक लाइन का कोड है जिसे if स्टेटमेंटstatement के बाद ब्लाक में निष्पादित करने की जरूरत है
अतः मुझे केवल एक लाइन के कोड की आवश्यकता है क्योंकि यह ठीक दिखाई पड़ता हैं
अतः चलिए मैं संक्षेप में दोहराता हूँ जो मैंने किया है मैंने नंबरnumber को 1 रखा है
यह मेरा नंबरnumberवेरिएबल हैयह वृद्धि कर सकता है और उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित कर सकता है
मैंने अपना नामname एलेक्सalex सेट कर रखा है
हम do शुरू करते हैं
नामname अभी भी एलेक्सalex है
यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है अतः यह बिना किसी की परवाह किये रन करेगा
अतः हम नंबरnumber को एकोecho कर रहे हैं जोकि 1 है
हम इसे 1 से बढ़ा रहे हैं जोकि 2 के बराबर होगा
अब हम कहेंगे यदि नंबरnumber जो कि अभी 2 है 10 से बड़ा या बराबर है जोकि यह नहीं है तब इसके माध्यम से जारी रखें
यह नहीं है अतः इसे छोड़ दीजिये यह कहेगा नामname= एलेक्सalex और फिर पुनः सबसे ऊपर जाएगा
यह अभी भी 2 होगा इसका मतलब लूप loop कोड के इस ब्लाक में फँसा है
यह 2 एकोecho करेगा
यह एक जोड़ेगा और कहिये 3
और फिर यह कहेगा क्या 3 10 से बड़ा या बराबर है
अभी यह नहीं है
अतः नामname billy में नहीं बदला है बजाय इसके यह बाकी अपने कोड को जारी रखेगा
नामname अभी भी एलेक्सalex है
अतः लूपloop जारी रहेगा इस मामले में यह तब तक जाएगा जब तक यह 10 तक न पहुँच जाए किन्तु 9 उपयोगकर्ता के लिए एकोecho होगा
अब num 10 हो जाएगा
if conditionशर्त true सही हो जाएगी
नामname billy सेट करते है और while कंडीशन में यह एलेक्सalex के बराबर नहीं होगा अतः while लूपloopरूक जाएगा और नीचे यहाँ कोड जारी रहेगा
अतः चलिए इस कोड का निष्पादन करते हैं इस पर क्लिक करें
अच्छा तो हमें 1 2 3 से लेकर 9 तक सभी मिल गए
स्पष्ट रूप से हमारी कंडीशन पूरी हुई है हमारा नामname billy में बदल गया है हमारा नामname एलेक्सalex के बराबर नहीं रहा
अतः हमारा लूपloop यहाँ पर रुक गया है
अब if को 11 में बदल दीजिये या आप num को 0 में बदल सकते हैं
अब यह काम नहीं करेगा और आप देखेंगे कि क्यों
हमें 0 से 9 तक मिला
इसका कारण आपका शुरुआती नंबरnumber है
यह क्या करेगा कि जैसा मैंने पहले बोला था यह वर्तमान के नंबरnumber को एकोecho करेगा फिर उसमें 1 की वृद्धि करके बदल देगा और फिर यह इसकी if स्टेटमेंटstatement में तुलना करेगा
अतः आप जो तुलना कर रहे हैं जो आप देख नहीं सकते
यदि आप इसे 11 में बदल देते हैं आप इसकी तुलना 11 से करेंगे फिर इसे billy में बदलेंगे और फिर यह लूपloopरुक जायेगा
हम कभी भी 11 का मान नहीं देख सकते यह केवल एक भीतरी तुलना है
यदि हम इसे रिफ्रेशrefresh करते हैं हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 1 से 10 तक है
यह मूलतः dowhile लूपloop है भले ही यह काफी समान है किन्तु जब आप प्रोग्रामिंग को तर्क के रूप में देखते हैं तो उस समय dowhile लूपloop while लूपloop की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है कुछ मामलों में हो सकता है यह अधिक उपयोगी हो
अतः इसका अभ्यास करिए और कुछ मान रख कर देखिये इसके साथ ही मैंने तुरंत जो प्रोग्राम बनाया है उसे पुनः बनाने की कोशिश करिए
जल्द ही लूप्सloops पर और ट्यूटोरियल्स होंगे अतः देखते रहिये
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद